इस तस्वीर को देख कर लग रहा है ये एक बहोत बड़ा होटल है इसके ऊपर में लिखाया हुआ है।